इस दृश्य के अंदर काफी खुरचिया है और ये खुरचिया व्हाइट कलर की है।

ये एक गांव के खेत का नजारा हैं जो बहुत ही अच्छा और शानदार हैं।

और ऐसे थोड़े व्हाइट व्हाइट ऐसे नाम लिखे हुए हैं।

टाइप के बने हुए नजर आ रहे हैं और उसके पीछे छोटी-बड़ी घास भी लगी हुई --

और एक ए_सी लगी हैं और जो उनकी दीवार है वो वाइट कलर की हैं।